पीछे की ओर सफ़ेद रंग की गाड़ियाँ नज़र आ रही है। ऊपर की ओर आसमान का रंग बिलकुल साफ़ है।

जिनका रंग हरा है ऊपर की ओर आसमान में सफ़ेद बादल छाए हुए है।

यह चित्र एक इमारत का नजर आ रहा है जहां पर नीचे की ओर काफी सीढ़ियां भी बनी हुई नजर आ रही है।

फ़र्श के ऊपर में कुछ समान रखा हुआ नजर आ रहा है ये समान के ऊपर उन का दाम भी लिखा नजर आ रहा है।

ऊपर की ओर आसमान का रंग बिल्कुल साफ है।

यह चित्र एक मेज का नजर आ रहा व मेज की ऊपर एक काली प्लेट का भी नजर आ रहा है।

वे बाग में चारों ओर छोटे वे बड़े वृक्ष वे पौधे लगे हुए नज़र आ रहे है जिनका रंग हरा है।

वह एक अदमी सफ़ेद कपड़ा ओढ़ कर जाते हुए नजर आ रहा है।

यह चित्र एक जगह का नजर आ रहा है जहां पर नीचे फर्श पर हरे रंग की मिर्चीयां पड़ी हुई नजर आ रही है।

वे नीचे की ओर डिब्बो का रंग पिला नजर आ रहा है । ऊपर हरा वे मैरून कलर के डब्बे रखे हुए नजर आ रहै है।

यह चित्र एक खुले मैदान का नजर आ रहा है जहां पर नीचे की ओर कुछ जगह मिट्टी तो कुछ जगह हरी घास डली हुई नजर आ रही है।

यह चित्र एक जगह का नजर रहा है। जहाँ पर एक पाइप के ऊपर कुछ पक्षी बैठे हुए नजर आ रहे है जिनका रंग सफ़ेद वेह भूरा है पक्षियों के पास एक गुलाबी रंग की टोकरी भी रखी हुई नजर आ रही है।

वे नीचे की ओंर मिट्टी नजर आ रही है पीछे की और कुछ दुकाने बनी हुई भी नजर आ रही है।

यह चित्र एक जिम का नजर आ रहा है जहाँ जिम के अंदर काफी मशीने भी रखी हुई नजर आ रही है जिनका रंग काला है।